या एक मॉल दिखत बा बिजली वाली दो सीढ़ीयाँ भी दिखत बा लोहे की रेलिंग लगी दिख रही है।

पेड़ों भी दिखत बा हरे-हरे कलर के चार पांच छे नाव दिख रही है जिसमें बहोत सारे लोगो लुगाईन बैठे हुए है।

कुछ डम्मी यो टंगी हुई दिखत बा ओको कलर वाले कपड़े पहना रखे है।

उसमे बहोत सारे झूले लगे हुए दिखत बा एक लोगईया खड़ी हुई दिखत बा--

खिड़की दिखत है कछु दीवाल दिखत है जो लाल हरी पीली कलर की है मोटरसाइकिल उन खड़ी हुई है।

बहोत सारी बिजलियाँ जलती हुई दिखत बा कछु लोगोन भी दिखत बा चार पांच सीमेंट के खम्बे बने भी दिखत ए--

ये एक बहोत बड़ा हॉल दिखत है जेके अंदर बहोत सारे कुर्सियाँ रखी हुई है काले कलर की--

दस लाइट बिजली के बोर्ड लगे हुए दिखत हे बिजली के वायर दिख रहे है पीछे एक पर्दा लगा हुआ दिखत हे।

छोटे-छोटे पेड़ दिखत ते बिजली के खम्भे दिखत ते वह कछु बिजली के वायर वन दिखत ते।

कुछ पेडून दिखत है निचे कछु दुकान दिखत है कछु लोगोंन भी दिखत है बिजली के वायर दिख--

ये एक किराने की दुकान दिखथे इसमें लकड़ी की आलमारिया बनी हुई दिखथे उसमे बिस्किटवान मन रखे हुए दिखथे।